जिसमे लड़के बैठके स्टडी कर रहे हैं अपनी एग्जाम की लग रहा हैं इसमें दो तस्वीरें भी हैं परदे भी हैं।

बहोत से लोग कंपास लेके पेन लेके कॉपी लेके बैठ के लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं।

लाइट जल रही है कुर्सियाँ रखी हैं बॉटले रखी हैं दो ठो --

और चप्पल उप्पल जूता नीचे डले हैं इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का लगता है मेरे को तो ऐसा।

दुकान है लगता है उसकी हार्डवेयर की इसमें पाइप वाइप लगी है अल्ट्राटेक का लोगो पेंट हुआ है लक्की ट्रेडर्स करके दुकान है।

ये किसी मात का सीन है लगता है जिसमें बहोत सी नमकीने रखी है पिस्ता बिस्ता वगैराह--

ये तो किसी शोरूम का है जो सरकारी शोरूम लगता है मेरे को एच_पी गैस का है।

ये औधौगिक परि प्रेक्षण संस्था कटनी--

ये पता नहीं कहां का सीन है बस अपने कटनी का ही सीन है मेरे को तो ऐसा लग रहा है।

ये तो कहीं का सीन है जिसमें तो गमले वमले हैं आदमी बैठे हैं दो तीन ठो--

बहोत सी चीजे है यार उसमें अच्छे पत्ता सी जे--

और बाजू में कोई स्कूल स्कूल वगैरा है स्टील की रिलिंग लगी है ने दीदी ने एक गॉडफादर नहीं रहती जो वही है उनके--